एक बाइक ये साइड है जो की हल्का सा दिख रहा है और पंखा भी है और बहुत ही कुछ अच्छा सारा समान है।

जिम का हल्का सा सामान रखा हुआ है और बैलून से टंगा हुआ है लाल कलर का और चर कलर का--

यह एक घर है घर का बाहर दो आदमीन बैठे हैं।

यह मैच खेलने वाला ये स्टेडियम है जो की काफी अच्छा है हरा कलर का है।

एक पोस्टर में लिखा गया है विकास इंटरप्राइजेज

यहाँ पर बैंक है जोकि बैंक के बाहर बहुत सारा आदमी बैठे हुए हैं।

एक दुकान है जो कि मैगी मिक्सचर और बहुत भी समान दिख रहे हैं सरफ।

एक रूम में पलंग रखा गया है जो कि पलंग पर गद्दा है बहुत मोटा।